k3b प्रयोग करके cd/dvd बनाने और burning करने के spoken आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि cd पर files कैसे burn करते हैं
आप निम्न भी सीखेंगे
सेटिंग्स बदलना
प्रोजेक्ट सेव करना और
cd को नाम देना
आप k3b के साथ क्या कर सकते हैं
k3b का प्रयोग cd/dvd पर files को बनाने या burn करने में होता है
files burning करना desktop से cd/dvd पर files को कॉपी करना है
k3b सारे file formats को burn करने के लिए supports करता हैaudio video या data
यहाँ हम ubuntu लिनक्स 1204 पर k3b 202 प्रयोग कर रहे हैं
आपको यह निश्चित करने की आवश्यकता है कि आपने इस tutorial के लिए drive में cd/dvd डाल ली है
मैंने अपने folder myk3bcd में एक audio file भी जोड़ ली है
हमने ubuntu desktop पर पहले ही इस folder को बनाया और सेव कर लिया था
मैंने इस folder में एक audio file learningk3b को जोड़ लिया है
आप अपने चुनाव की कोई भी audio file प्रयोग कर सकते हैं
पहले dash home पर click करें जो आपके computer desktop के ऊपरी बाएं कोने पर गोल button है
search box दिखता है
अब type करें k3b
k3b icon दिखता है
application खोलने के लिए इस पर click करें
अब k3b प्रयोग करके एक cd को बनाते और burn करते हैं
इसके लिए new project icon पर click करें
dropdown जो दिखता है उससे new data project चुनें
ऊपरी बाएं panel पर home folder चुनें
अब home home folder में files और folders को देख सकते हैं
आगे desktop पर click करें
आपको अपनी machine पर जो भी folder या file चाहिए आप चुन सकते हैं
इस demo के लिए मैं myk3bcd folder चुनूँगी
अतः मैं myk3bcd folder पर right click करुँगी
और add to project विकल्प चुनूँगी
अब आप निचले panel में चयनित folder को देख सकते हैं
आगे cd पर folder बनाते हैं और myk3bcd folder को इस पर move कराते हैं
निचले बाएं panel पर right click करते हैं
विकल्पों की सूची जो दिखती है उससे new folder चुनें
हम एक dialog box देख सकते हैं
text box में type करें folderone
ok पर click करें
निचले panel से myk3bcd चुनें
आगे writer1 file चुनें
चयनित file writer1 को folderone में खींचे और छोड़ें
जाँचें यदि file writer1 copied की जा check है folderone पर click करें
यहाँ हम file writer1 देख सकते हैं
अब निचले panel से burn icon पर click करें
data project – k3b window खुलती है
आगे इस data project – k3b window की settings को बदलते हैं
writing टैब चुनें और यहाँ writing mode में हम auto चुनेंगे
ध्यान दें कि auto default setting है
tab filesystem टैब चुनें
default रूप से यह linux/unix + windows की तरह set है
अतः यहाँ कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है
tab misc टैब पर जाते हैं
और यहाँ multisession में auto चुनें
अब cd पर data burn करने के लिए burn चुनें
burning प्रक्रिया शुरू होती है
यहाँ हम window में progress status bar देख सकते हैं
एक बार जब burning समाप्त हो जाती है तो cd स्वतः ही बाहर निकल जाती है
files अब cd पर copied हो गयीं हैं
यह burning प्रक्रिया का अंत है
अब audio files को एक अन्य cd पर burn करते हैं और सेव करते हैं
पहले निश्चित कर लें कि एक नयी cd डाली गयी है और drive बंद हो गयी है
पहले की तरह ही new project पर जाएँ और new audio cd project चुनें
यहाँ ऊपरी बाएं panel से myk3bcd folder के लिए browse करें
अब ऊपरी दायें panel में audio file learningk3b चुनें
आगे audio file को निचले दायें panel पर खींचे और छोड़ें
अब जाँचें कि क्या हमने सही file खींची और छोड़ी है
आप यहाँ निचले panel में file का विवरण जाँच सकते हैं
इस file के लिए हम देख सकते हैं कि artist title और file name प्रदर्शित होते हैं
अब सीखते हैं कि इस audio को burn कैसे करें
इसके लिए main toolbar से save पर click करें
हम save as – k3b window देख सकते हैं
यहाँ text box में अपने project के लिए name type करें
मैं type करुँगी mywork अब save पर click करें
अब burn पर click करें
यह audio project – k3b window खोलता है
यहाँ हम टैब की default settings प्रयोग करेंगे
हालाँकि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार tabs में बदलाव कर सकते हैं
अब दोबारा burn पर click करें
हम progress status window देख सकते हैं
और burning समाप्त होने के बाद cd बाहर निकल जाती है
इसका मतलब है audio file की saving और burning समाप्त हो गयी है
यह हमें k3b प्रयोग करके cd/dvd बनाने और burning करने के इस tutorial के अंत में लाता है
इस tutorial में हमने k3b interface के बारे में सीखा
हमने निम्न भी सीखा: files का manual selection करना
भिन्न format files के साथ cd burning करना
project सेव करना
और cd को name देना
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
cd पर दो audio files burn करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी